और अ पीछे अ हरी-भरी झाड़ियां दिख रही है।

और सामने रोड दिखाई दे रहा है सामने एक आदमी सेल्फी ले रहा है।

कोई क्रिस्चन का कुछ सेरेमनी चल रहा है जिसमे अअ बैलुन से डेकोरेशन किया हुआ है।

यहाँ पे एक होटल जैसा कुछ दिख रहा है जिसके सामने एक आदमी खड़ा है और कोट और टाई जैकेट में खड़ा है आई कार्ड लगाए हुए है।

बहुत महेनत कर रहे है बच्चे यह सीखने के लिए और बहुत ही यहां का सुंदर दृश्य है।

यह रेड कलर के गुब्बारे से दिल का शेप बना के सजाया हुआ है ऊपर ए.सी. लगे हुए है और नीचे टाइल्स लगे हुए हैं और --